ये पहाड़ है। अ उधर भी पहाड़ है इधर जंगल है सुनहरा सीन है।

ये बारिश का पानी हैबिजली का सब चीज है।

ये देखो गंगा जी का छाड़ल है। उधर भी गंगा जी हैं और इधर भी हैं। हूँ ये लगता है की इधर हाँ वही है अनाज सब जुटता है।

और गोलका उधर किनारे है बांस-उस बा।

ये फील्ड है इसमें पानी जमता होगा बरसाती।

भीतर भी गार्डन है देखो अब तो बहुत चीज --